मेरे प्यारे देशवासियो आप सब को बहुतबहुत नमस्कार आज दुनिया भर में ईसाई समुदाय के लोग ईस्टर मना रहे हैं
मैं सभी लोगों को ईस्टर की ढ़ेरों शुभकामनायें देता हूँ
मेरे युवा दोस्तो आप सब एक तरफ़ एक्साम में बसी होंगे
कुछ लोगों की एक्साम पूरी हो गयी होगी
और कुछ लोगों के लिए इसलिए भी कसौटी होगी कि एक तरफ़ एक्साम और दूसरी तरफ़ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप
आज भी शायद आप भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच का इंतज़ार करते होंगे
पिछले दिनों भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ़ दो बेहतरीन मैच जीते हैं
एक बढ़िया सा मोमेंटम नज़र आ रहा है
आज जब ऑस्ट्रेलिया और भारत खेलने वाले हैं मैं दोनों टीमों के प्लेयर्स को अपनी शुभकामनायें देता हूँ
65 प्रतिशत जनसँख्या नौजवान हो और खेलों की दुनिया में हम खो गए हों ये तो बात कुछ बनती नहीं है
समय है खेलों में एक नई क्रांति का दौर का
और हम देख रहे हैं कि भारत में क्रिकेट की तरह अब फुटबॉल हॉकी टेनिस कबड्डी एक मूड बनता जा रहा है
मैं आज नौजवानों को एक और खुशखबरी के साथ कुछ अपेक्षायें भी बताना चाहता हूँ
आपको शायद इस बात का तो पता चल गया होगा कि अगले वर्ष 2017 में भारत फिफा अंडर 17 विश्वकप की मेज़बानी करने जा रहा है
विश्व की 24 टीमें भारत में खेलने के लिए आ रही हैं
1951 1962 एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और 1956 ओलम्पिक गेम्स में भारत चौथे स्थान पर रहा था
लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों में हम निचली पायरी पर ही चलते गए पीछे ही हटते गए गिरते ही गए गिरते ही गए
आज तो फिफा में हमारा रैंकिंग इतना नीचे है कि मेरी बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है
और दूसरी तरफ़ मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों भारत में युवाओं की फुटबॉल में रूचि बढ़ रही है
ईपीएल हो स्पैनिश लीग हो या इंडियन सुपर लीग के मैच हो
भारत का युवा उसके विषय में जानकारी पाने के लिए टीवी पर देखने के लिए समय निकालता है
कहने का तात्पर्य यह है कि रूचि तो बढ़ रही है
लेकिन इतना बड़ा अवसर जब भारत में आ रहा है तो हम सिर्फ़ मेज़बान बन कर के अपनी जिम्मेवारी पूरी करेंगे इस पूरा वर्ष एक फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल का माहौल बना दें
स्कूलों में कॉलेजों में हिन्दुस्तान के हर कोने पर हमारे नौजवान हमारे स्कूलों के बालक पसीने से तरबतर हों
चारो तरफ़ फुटबॉल खेला जाता हो
ये अगर करेंगे तो फिर तो मेज़बानी का मज़ा आएगा और इसीलिए हम सब की कोशिश होनी चाहिये कि हम फुटबॉल को गाँवगाँव गलीगली कैसे पहुँचाएं
2017 फिफा अंडर 17 विश्वकप एक ऐसा अवसर है इस एक साल के भीतरभीतर हम चारों तरफ़ नौजवानों के अन्दर फुटबॉल के लिए एक नया जोम भर दे एक नया जुत्साह भर दे
इस मेज़बानी का एक फ़ायदा तो है ही है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा
खेल के लिए जो आवश्यक सुविधाएँ हैं उस पर ध्यान जाएगा
मुझे तो इसका आनंद तब मिलेगा जब हम हर नौजवान को फुटबॉल के साथ जोड़ेंगें
दोस्तो मैं आप से एक अपेक्षा करता हूँ
2017 की ये मेज़बानी ये अवसर कैसा हो साल भर का हमारा फुटबॉल में मोमेंटम लाने के लिए कैसेकैसे कार्यक्रम हो प्रचार कैसे हो व्यवस्थाओं में सुधार कैसे हो फिफा अंडर 17 विश्वकप के माध्यम से भारत के नौजवानों में खेल के प्रति रूचि कैसे बढ़े सरकारों में शैक्षिक संस्थाओं में अन्य सामाजिक संगठनों में खेल के साथ जुड़ने की स्पर्धा कैसे खड़ी हो क्रिकेट में हम सभी देख पा रहे हैं लेकिन यही चीज़ और खेलों में भी लानी है
फुटबॉल एक अवसर है
क्या आप मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं वैश्विक स्तर पर भारत का ब्रांडिंग करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर मैं मानता हूँ
भारत की युवा शक्ति की पहचान कराने का अवसर मानता हूँ
मैच के दरमियाँ क्या पाया क्या खोया उस अर्थ में नहीं
इस मेज़बानी की तैयारी के द्वारा भी हम अपनी शक्ति को सजो सकते हैं शक्ति को प्रकट भी कर सकते हैं और हम भारत का ब्रांडिंग भी कर सकते हैं
क्या आप मुझे नरेंद्रमोदीअप्प इस पर अपने सुझाव भेज सकते हैं क्या लोगो कैसा हो स्लोगन्स कैसे हो भारत में इस बात को फ़ैलाने के लिए क्या क्या तरीके हों गीत कैसे हों सोवेनिर्स बनाने हैं तो किसकिस प्रकार के सोवेनिर्स बन सकते हैं
सोचिए दोस्तो और मैं चाहूँगा कि मेरा हर नौजवान ये 2017 फिफा अंडर 17 विश्व कप का एम्बासाडोर बने
आप भी इसमें शरीक होइए भारत की पहचान बनाने का सुनहरा अवसर है
मेरे प्यारे विद्यार्थियो छुट्टियों के दिनों में आपने पर्यटन के लिए सोचा ही होगा
बहुत कम लोग हैं जो विदेश जाते हैं लेकिन ज्यादातर लोग अपनेअपने राज्यों में 5 दिन 7 दिन कहीं चले जाते हैं
कुछ लोग अपने राज्यों से बाहर जाते हैं
पिछली बार भी मैंने आप लोगों से एक आग्रह किया था कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ से फोटो अपलोड कीजिए
और मैंने देखा कि जो काम टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं कर सकता जो काम हमारा कल्चरल डिपार्टमेंट नहीं कर सकता जो काम राज्य सरकारें भारत सरकार नहीं कर सकतीं वो काम देश के करोड़ोंकरोड़ों ऐसे प्रवासियों ने कर दिया था
ऐसीऐसी जगहों के फोटो अपलोड किये गए थे कि देख कर के सचमुच में आनंद होता था
इस काम को हमें आगे बढ़ाना है इस बार भी कीजिये लेकिन इस बार उसके साथ कुछ लिखिए
सिर्फ़ फोटो नहीं आपकी रचनात्मक जो प्रवृति है उसको प्रकट कीजिए और नई जगह पर जाने से देखने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है
जो चीजें हम क्लासरूम में नहीं सीख पाते जो हम परिवार में नहीं सीख पाते जो चीज हम यारदोस्तों के बीच में नहीं सीख पाते वे कभीकभी भ्रमण करने से ज्यादा सीखने को मिलती है और नई जगहों के नयेपन का अनुभव होता है
लोग भाषा खानपान वहाँ के रहनसहन न जाने क्याक्या देखने को मिलता है
और किसी ने कहा है आ ट्रैवेलर विथआउट अब्जर्वेशन
इस आ बर्ड विथआउट विंग्स शौकएदीदार है अगर तो नज़र पैदा कर
भारत विविधताओं से भरा हुआ है
एक बार देखने के लिए निकल पड़ो जीवन भर देखते ही रहोगे देखते ही रहोगे कभी मन नहीं भरेगा और मैं तो भाग्यशाली हूँ मुझे बहुत भ्रमण करने का अवसर मिला है
जब मुख्यमंत्री नहीं था प्रधानमंत्री नहीं था और आपकी ही तरह छोटी उम्र थी मैंने बहुत भ्रमण किया
शायद हिन्दुस्तान का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहाँ मुझे जाने का अवसर न मिला हो
ज़िन्दगी को बनाने के लिए प्रवास की एक बहुत बड़ी ताकत होती है और अब भारत के युवकों में प्रवास में साहस जुड़ता चला जा रहा है
जिज्ञासा जुड़ती चली जा रही है
पहले की तरह वो रटेरटाये बनेबनाये उसी राउटे पर नहीं चला जाता है वो कुछ नया करना चाहता है वो कुछ नया देखना चाहता है
मैं इसे एक अच्छी निशानी मानता हूँ
हमारा युवा साहसिक हो जहाँ कभी पैर नहीं रखा है वहाँ पैर रखने का उसका मन होना चाहिए
मैं कोल इंडिया को एक विशेष बधाई देना चाहता हूँ
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड डब्ल्यूसीएल नागपुर के पास एक सावनेर जहाँ कोल माइन्स हैं
उस कोल माइन्स में उन्होंने ईसीओ फ्रेंडली माइन टूरिज्म सर्किट डेवलप किया है
आम तौर पर हम लोगों की सोच है कि कोल माइन्स यानि दूर ही रहना
वहाँ के लोगों की तस्वीरें जो हम देखते हैं तो हमें लगता है वहाँ जाने जैसा क्या होगा और हमारे यहाँ तो कहावत भी रहती है कि कोयले में हाथ काले तो लोग यूँ ही दूर भागते हैं
लेकिन उसी कोयले को टूरिज्म का डेस्टिनेशन बना देना और मैं खुश हूँ कि अभीअभी तो ये शुरुआत हुई है और अब तक क़रीब दस हज़ार से ज्यादा लोगों ने नागपुर के पास सावनेर गाँव के निकट ये ईसीओ फ्रेंडली माइन टूरिज्म की मुलाक़ात की है
ये अपने आप में कुछ नया देखने का अवसर देती है
मैं आशा करता हूँ कि इन छुट्टियों में जब प्रवास पर जाएँ तो स्वच्छता में आप कुछ योगदान दे सकते हैं क्या
इन दिनों एक बात नज़र आ रही है भले वो कम मात्रा में हो अभी भी आलोचना करनी है तो अवसर भी है लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि एक जागरूकता आई है
टूरिस्ट प्लेसेस पर लोग स्वच्छता बनाये रखने का प्रयास कर रहे हैं
टूरिस्ट भी कर रहे हैं और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के स्थान पर स्थाई रूप से रहने वाले लोग भी कुछ न कुछ कर रहे हैं
हो सकता है बहुत वैज्ञानिक तरीक़े से नहीं हो रहा लेकिन हो रहा है
आप भी एक टूरिस्ट के नाते टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर स्वच्छता उस पर आप बल दे सकते हैं क्या मुझे विश्वास है मेरे नौजवान मुझे इसमें जरूर मदद करेंगे
और ये बात सही है कि टूरिज्म सबसे ज्यादा रोज़गार देने वाला क्षेत्र है
ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति कमाता है और जब टूरिस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाता है
ग़रीब टूरिस्ट जाएगा तो कुछ न कुछ तो लेगा
अमीर होगा तो ज्यादा खर्चा करेगा
और टूरिज्म के द्वारा बहुत रोज़गार की संभावना है
विश्व की तुलना में भारत टूरिज्म में अभी बहुत पीछे है
लेकिन हम सवा सौ करोड़ देशवासी हम तय करें कि हमें अपने टूरिज्म को बल देना है तो हम दुनिया को आकर्षित कर सकते हैं
विश्व के टूरिज्म के एक बहुत बड़े हिस्से को हमारी ओर आकर्षित कर सकते हैं और हमारे देश के करोड़ोकरोड़ों नौजवानों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं
सरकार हो संस्थाएँ हों समाज हो नागरिक हो हम सब ने मिल करके ये करने का काम है
आइये हम उस दिशा में कुछ करने का प्रयास करें
मेरे युवा दोस्तो छुट्टियाँ ऐसे ही आ कर चला जाएं ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती
आप भी इस दिशा में सोचिए
क्या आपकी छुट्टियाँ ज़िन्दगी के महत्वपूर्ण वर्ष और उसका भी महत्वपूर्ण समय ऐसे ही जाने दोगे क्या मैं आपको सोचने के लिए एक विचार रखता हूँ
क्या आप छुट्टियों में एक हुनर अपने व्यक्तित्व में एक नई चीज़ जोड़ने का संकल्प ये कर सकते हैं क्या अगर आपको तैरना नहीं आता है तो छुट्टियों मे संकल्प कर सकते हैं मैं तैरना सीख लूँ साईकिल चलाना नही आता है तो छुट्टियों मे तय कर लूँ मैं साईकिल चलाऊंI आज भी मैं दो उंगली से कंप्यूटर को टाइप करता हूँ तो क्या मैं टाइपिंग सीख लूँ हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए कितने प्रकार के कौशल है क्यों ना उसको सीखें क्यों न हमारी कुछ कमियों को दूर करें क्यों न हम अपनी शक्तियों में इजाफ़ा करेंI अब सोचिए और कोई उसमें बहुत बड़े क्लासेस चाहिए कोई ट्रेनर चाहिए बहुत बड़ी फीस चाहिए बड़ा बजेट चाहिए ऐसा नहीं है
आप अपने अगलबगल में भी मान लीजिये आप तय करें कि मैं वास्ते में से बेस्ट बनाऊंगा
कुछ देखिये और उसमे से बनाना शुरू कर दीजिये
देखिये आप को आनंद आयेगा शाम होतेहोते देखिये ये कूड़ेकचरे में से आपने क्या बना दिया
आप को पेंटिंग का शौक है आता नही है अरे तो शुरू कर दीजिये ना आ जायेगा
आप अपनी छुट्टियों का समय अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अपने पास कोई एक नए हुनर के लिए अपने कौशलविकास के लिए अवश्य करें और अनगिनत क्षेत्र हो सकते हैं जरुरी नहीं है कि मैं जो गिना रहा हूँ वही क्षेत्र हो सकते है
और आपके व्यक्तित्व की पहचान उससे और उससे आप का आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा
एक बार देख लीजिये जब छुट्टियों के बाद स्कूल में वापिस जाओगे कॉलेज मे वापिस जाओगे और अपने साथियों को कहोगे कि भाई मैंने तो छुट्टीयों मे ये सीख लिया और अगर उसने नहीं सिखा होगा तो वो सोचेगा कि यार मेरा तो बर्बाद हो गया तुम बड़े पक्के हो यार कुछ करके आ गए
ये अपने साथियों मे शायद बात होगी
मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर करेंगे
और मुझे बताइए कि आप ने क्या सीखा
बतायेंगे ना
इस बार मन की बात में माइगोव पर कई सुझाव आये हैं
मेरा नाम अभि चतुर्वेदी है
नमस्ते प्रधानमंत्री जी आपने पिछले गर्मियों की छुट्टियों में बोला कि चिड़ियों को भी गर्मी लगती है तो हमने एक बर्तन में पानी में रखकर अपनी बालकोनी में या छत पर रख देना चाहिये जिससे चिड़िया आकर पानी पी लें
मैंने ये काम किया और मेरे को आनंद आया इसी बहाने मेरी बहुत सारी चिड़ियों से दोस्ती हो गयी
मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस कार्य को वापस मन की बात में दोहराएँ
मेरे प्यारे देशवासियो मैं अभि चतुर्वेदी का आभारी हूँ इस बालक ने मुझे याद कराया वैसे मैं भूल गया था
और मेरे मन में नहीं था कि आज मैं इस विषय पर कुछ कहूँगा लेकिन उस अभि ने मुझे याद करवाया कि पिछले वर्ष मैंने पक्षियों के लिए घर के बाहर मिट्टी के बर्तन में
मेरे प्यारे देशवासियो मैं अभि चतुर्वेदी एक बालक का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ
उसने मुझे फोन करके एक अच्छा काम याद करवा दिया
पिछली बार तो मुझे याद था
और मैंने कहा था कि गर्मियों के दिनों मे पक्षियों के लिए अपने घर के बाहर मिट्टी के बर्तनों मे पानी रखे
अभि ने मुझे बताया कि वो साल भर से इस काम को कर रहा है
और उसकी कई चिड़िया उसकी दोस्त बन गई है
हिन्दी की महान कवि महादेवी वर्मा वो पक्षियों को बहुत प्यार करती थीं
उन्होंने अपनी कविता में लिखा था तुझको दूर न जाने देंगे दानों से आंगन भर देंगे और होद में भर देंगे हम मीठामीठा ठंडा पानी
आइये महादेवी जी की इस बात को हम भी करें
मैं अभि को अभिनन्दन भी देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि तुमने मुझको बहुत महत्वपूर्ण बात याद कराई
मैसूर से शिल्पा कूके उन्होंने एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा हम सब के लिए रखा है
उन्होंने कहा है कि हमारे घर के पास दूध बेचने वाले आते हैं अख़बार बेचने वाले आते हैं पोस्टमैन आते हैं
कभी कोई बर्तन बेचने वाले वहाँ से गुजरते हैं कपड़े बेचने वाले गुजरते हैं
क्या कभी हमने उनको गर्मियों के दिनों मे पानी के लिए पूछा है क्या क्या कभी हमने उसको पानी आफर किया है क्या शिल्पा मैं आप का बहुत आभारी हूँ आपने बहुत संवेदनशील विषय को बड़े सामान्य सरल तरीके से रख दिया
ये बात सही है बात छोटी होती है लेकिन गर्मी के बीच अगर पोस्टमैन घर के पास आया और हमने पानी पिलाया कितना अच्छा लगेगा उसको
खैर भारत में तो ये स्वाभाव है ही है
लेकिन शिल्पा मैं आभारी हूँ कि तुमने इन चीज़ों को आब्जर्व किया
मेरे प्यारे किसान भाइयो और बहनो डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया आपने बहुत सुना होगा
कुछ लोगों को लगता है कि डिजिटल इंडिया तो शहर के नौजवानों की दुनिया है
जी नही आपको खुशी होगी कि एक किसान सुविधा अप्प आप सब की सेवा में प्रस्तुत किया है
ये किसान सुविधा अप्प के माध्यम से अगर आप उसको अपने मोबाइलफोन में डाउनलोड करते हैं तो आपको कृषि सम्बन्धी वीथर सम्बन्धी बहुत सारी जानकारियाँ अपनी हथेली में ही मिल जाएगी
बाज़ार का हाल क्या है मंडियों में क्या स्थिति है इन दिनों अच्छी फसल का क्या दौर चल रहा है दवाइयां कौनसी उपयुक्त होती हैं कई विषय उस पर है
इतना ही नहीं इसमें एक बटन ऐसा है कि जो सीधासीधा आपको कृषि वैज्ञानिकों के साथ जोड़ देता है एक्सपर्ट के साथ जोड़ देता है
अगर आप अपना कोई सवाल उसके सामने रखोगे तो वो जवाब देता है समझाता है आपको
मैं आशा करता हूँ कि मेरे किसान भाईबहन इस किसान सुविधा अप्प को अपने मोबाइलफोन पर डाउनलोड करें
ट्राय तो कीजिए उसमें से आपके काम कुछ आता है क्या और फिर भी कुछ कमी महसूस होती है तो आप मुझे शिकायत भी कर दीजिये
मेरे किसान भाइयो और बहनों बाकियों के लिए तो गर्मी छुट्टियों के लिए अवसर रहा है
लेकिन किसान के लिए तो और भी पसीना बहाने का अवसर बन जाता है
वो वर्षा का इंतजार करता है और इंतजार के पहले किसान अपने खेत को तैयार करने के लिए जीजान से जुट जाता है ताकि वो बारिश की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होने देना चाहता है
किसान के लिए किसानी के सीजन शुरू होने का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है
लेकिन हम देशवासियो को भी सोचना होगा कि पानी के बिना क्या होगा क्या ये समय हम अपने तालाब अपने यहाँ पानी बहने के रास्ते तालाबों में पानी आने के जो मार्ग होते हैं जहाँ पर कूड़ाकचरा या कुछ न कुछ एन्क्रोचमेंट हो जाता तो पानी आना बंद हो जाता है और उसके कारण जलसंग्रह धीरेधीरे कम होता जा रहा है
क्या हम उन पुरानी जगहों को फिर से एक बार खुदाई करके सफाई करके अधिक जलसंचय के लिए तैयार कर सकते हैं क्या जितना पानी बचायेंगे तो पहली बारिश में भी अगर पानी बचा लिया तालाब भर गए हमारे नदी नाले भर गए तो कभी पीछे बारिश रूठ भी जाये तो हमारा नुकसान कम होता है
इस बार आपने देखा होगा 5 लाख तालाब खेततालाब बनाने का बीड़ा उठाया है
मनरेगा से भी जलसंचय के लिए एसेट्स क्रिएट करने की तरफ बल दिया है
गाँवगाँव पानी बचाओ आने वाली बारिश में बूँदबूँद पानी कैसे बचाएँ
गाँव का पानी गाँव में रहे ये अभियान कैसे चलायें आप योजना बनाइए सरकार की योजनाओं से जुड़िए ताकि एक ऐसा जनआंदोलन खड़ा करें ताकि हम पानी से एक ऐसा जनआन्दोलन खड़ा करें जिसके पानी का माहत्म्य भी समझें और पानी संचय के लिए हर कोई जुड़े
देश में कई ऐसे गाँव होंगे कई ऐसे प्रगतिशील किसान होंगे कई ऐसे जागरूक नागरिक होंगे जिन्होंने इस काम को किया होगा
लेकिन फिर भी अभी और ज्यादा करने की आवश्यकता है
मेरे किसान भाइयोबहनों मैं एक बार आज फिर से दोहराना चाहता हूँ
क्योंकि पिछले दिनों भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा किसान मेला लगाया था और मैंने देखा कि क्याक्या आधुनिक टेक्नोलॉजी आई है और कितना बदलाव आया है कृषि क्षेत्र में लेकिन फिर भी उसे खेतों तक पहुँचाना है और अब किसान भी कहने लगा है कि भई अब तो फर्टिलाइजर कम करना है
मैं इसका स्वागत करता हूँ
अधिक फर्टिलाइजर के दुरुपयोग ने हमारी धरती माँ को बीमार कर दिया है और हम धरती माँ के बेटे हैं सन्तान हैं हम अपनी धरती माँ को बीमार कैसे देख सकते हैं
अच्छे मसाले डालें तो खाना कितना बढ़िया बनता है लेकिन अच्छे से अच्छे मसाले भी अगर ज्यादा मात्रा में दाल दें तो वो खाना खाने का मन करता है क्या वही खाना बुरा लगता है न ये फर्टिलाइजर का भी ऐसा ही है कितना ही उत्तम फर्टिलाइजर क्यों न हो लेकिन हद से ज्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे तो वो बर्बादी का कारण बन जायेगा
हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिये और इससे खर्चा भी कम होगा पैसे आपके बचेंगे
और हमारा तो मत है कम कॉस्ट ज्यादा आउटपुट कम लागत ज्यादा पावत इसी मंत्र को ले करके चलना चाहिए और वैज्ञानिक तौरतरीकों से हम अपने कृषि को आगे बढ़ाना चाहिए
मैं आशा करता हूँ कि जल संचय में जो भी आवश्यक काम करना पड़े हमारे पास एकदो महीने हैं बारिश आने तक हम पूरे मनोयोग से इसको करें
जितना पानी बचेगा किसानी को उतना ही ज्यादा लाभ होगा ज़िन्दगी उतनी ही ज्यादा बचेगी
मेरे प्यारे देशवासियो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है और इस बार दुनिया ने वर्ल्ड हेल्थ डे को बीट डायबीट्स इस थीम पर केन्द्रित किया है
डायबीट्स को परास्त करिए
डायबीट्स एक ऐसा मेजबान है कि वो हर बीमारी की मेजबानी करने के लिए आतुर रहता है
एक बार अगर डायबीट्स घुस गया तो उसके पीछे ढेर सारे बीमारी कुरुपी मेहमान अपने घर में शरीर में घुस जाते हैं
कहते हैं 2014 में भारत में क़रीब साडे छः करोड़ डायबीट्स के मरीज थे
3 प्रतिशत मृत्यु का कारण कहते हैं कि डायबीट्स पाया गया
और डायबीट्स के दो प्रकार होते हैं एक Type1 Type2 टाइप 1 में वंशगत रहता है हेरेडिटरी है मातापिता को है इसलिए बालक को होता है
और Type2 आदतों के कारण उम्र के कारण मोटापे के कारण
हम उसको निमंत्रण देकर के बुलाते हैं
दुनिया डायबीट्स से चिंतित है इसलिए 7 तारीक को वर्ल्ड हेल्थ डे में इसको थीम रखा गया है
हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल उसके लिए सबसे बड़ा कारण है
शरीरिक श्रम कम हो रहा है
पसीने का नामओनिशान नहीं है चलनाफिरना हो नहीं रहा है
खेल भी खेलेंगे तो ओनलाइन खेलते है आफलाइन कुछ नहीं हो रहा है
क्या हम 7 तारीख से कुछ प्रेरणा ले कर के अपने निजी जीवन में डायबीट्स को परास्त करने के लिए कुछ कर सकते है क्या आपको योग में रूचि है तो योग कीजिए नहीं तो कम से कम दौड़ने चलने के लिए तो जाइये
अगर मेरे देश का हर नागरिक स्वस्थ होगा तो मेरा भारत भी तो स्वस्थ होगा
कभी कबार हम संकोचवश मेडिकल चेकअप नहीं करवाते हैं
और फिर बहुत बुरे हाल होने के बाद ध्यान में आता है कि ओह हो मेरा तो बहुत पुराना डायबीट्स था
चेक करने में क्या जाता है इतना तो कर लीजिये और अब तो सारी बातें उपलब्ध हैं
बहुत आसानी से हो जाती हैं
आप ज़रूर उसकी चिंता कीजिए
24 मार्च को दुनिया ने टीबी डे मनाया
हम जानते है जब मैं छोटा था तो टीबी का नाम सुनते ही डर जाते थे
ऐसा लगता था कि बस अब तो मौत आ गयी
लेकिन अब टीबी से डर नहीं लगता है
क्योंकि सबको मालूम है कि टीबी का उपचार हो सकता है और असानी से हो सकता है
लेकिन जब टीबी और मौत जुड़ गए थे तो हम डरते थे लेकिन अब टीबी के प्रति हम बेपरवाह हो गए हैं
लेकिन दुनिया की तुलना में टीबी के मरीजों की संख्या बहुत है
टीबी से अगर मुक्ति पानी है तो एक तो करेक्ट ट्रीटमेंट चाहिये और कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहिये
सही उपचार हो और पूरा उपचार हो
बीच में से छोड़ दिया तो वो मुसीबत नई पैदा कर देता है
अच्छा टीबी तो एक ऐसी चीज़ है कि अड़ोसपड़ोस के लोग भी तय कर सकते है कि अरे भई चेक करो देखो टीबी हो गया होगा
ख़ासी आ रही है बुखार रहता है वज़न कम होने लगता है
तो अड़ोसपड़ोस को भी पता चल जाता है कि देखो यार कहीं उसको टीबीवीबी तो नहीं हुआ
इसका मतलब हुआ कि ये बीमारी ऐसी है कि जिसको जल्द जाँच की जा सकती है
मेरे प्यारे देशवासियो इस दिशा में बहुत काम हो रहा है
तेरह हज़ार पांच सौ से अधिक माइक्रोस्कोपी सेंटर हैं
चार लाख से अधिक डॉट प्रोवाइडर हैं
अनेक एडवांस लैब्स हैं और सारी सेवाएँ मुफ़्त में हैं
आप एक बार जाँच तो करा लीजिए
और ये बीमारी जा सकती है
बस सही उपचार हो और बीमारी नष्ट होने तक उपचार जारी रहे
मैं आपसे आग्रह करूँगा कि चाहे टीबी हो या डायबीट्स हो हमें उसे परास्त करना है
भारत को हमें इन बीमारियों से मुक्ति दिलानी है
लेकिन ये सरकार डॉक्टर दवाई से नहीं होता है जब तक की आप न करें
और इसलिए मैं आज मेरे देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि हम डायबीट्स को परास्त करें
हम टीबी से मुक्ति पायें
मेरे प्यारे देशवासियो अप्रैल महीने में कई महत्वपूर्ण अवसर आ रहे हैं
विशेष कर 14 अप्रैल भीमराव बाबा साहिब अम्बेडकर का जन्मदिन
उनकी 125वी जयंती साल भर पूरे देश में मनाई गयी
एक पंचतीर्थ मऊ उनका जन्म् स्थान लोंडों में उनकी शिक्षा हुई नागपुर में उनकी दीक्षा हुई 26अलीपुर रोड दिल्ली में उनका महापरिनिर्वाण हुआ और मुंबई में जहाँ उनका अन्तिम संस्कार हुआ वो चैत्य भूमि
इन पाँचों तीर्थ के विकास के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं
मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस वर्ष 14 अप्रैल को मुझे बाबा साहिब अम्बेडकर की जन्मस्थली मऊ जाने का सौभाग्य मिल रहा है
एक उत्तम नागरिक बनने के लिए बाबा साहिब ने हमने बहुत कुछ दिया है
उस रास्ते पर चल कर के एक उत्तम नागरिक बन कर के उनको हम बहुत बड़ी श्रधांजलि दे सकते हैं
कुछ ही दिनों में विक्रम संवत् की शुरुआत होगी
नया विक्रम संवत् आएगा
अलगअलग राज्यों में अलगअलग रूप से मनाया जाता है
कोई इसे नव संवत्सर कहता है कोई गुड़ीपड़वा कहता है कोई वर्ष प्रतिप्रता कहता है कोई उगादी कहता है
लेकिन हिन्दुस्तान के क़रीबक़रीब सभी क्षत्रों में इसका महात्म्यं है
मेरी नव वर्ष के लिए सब को बहुतबहुत शुभकामनाएं है
आप जानते हैं मैं पिछली बार भी कहा था कि मेरे मन की बात को सुनने के लिए कभी भी सुन सकते हैं
क़रीबक़रीब 20 भाषाओँ में सुन सकते हैं
आपके अपने समय पर सुन सकते हैं
आपके अपने मोबाइल फ़ोन पर सुन सकते हैं
बस सिर्फ आपको एक मिस्ड कॉल करना होता है
और मुझे ख़ुशी है कि इस सेवा का लाभ अभी तो एक महीना बड़ी मुश्किल से हुआ है
लेकिन 35 लाख़ लोगों ने इसका फायदा उठाया
आप भी नंबर लिख लीजिये 8190881908 मैं रिपीट करता हूँ 8190881908 आप मिस्ड कॉल करिए और जब भी आपकी सुविधा हो पुरानी मन की बात भी सुनना चाहते हो तो भी सुन सकते हो आपकी अपनी भाषा में सुन सकते हो
मुझे ख़ुशी होगी आपके साथ जुड़े रहने की
मेरे प्यारे देशवासियो आपको बहुतबहुत शुभकामनायें
बहुतबहुत धन्यवाद